और यहां बहोत सारे लोग पैसे लेने के लिए लाइन में खड़े हैं।

रोड वगैरा भी बनते हैं जो कि बहुत दिखने में अच्छे और मजबूत होते--

और यह नदी बहोत ही गहरी--

और यहां बहोत सारी लड़कियां डांस करने आई हुई हैं।

बहोत सारे पौधे घांस जमे हुई है।